यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक ऊपर से पहाड़ी पे से खींची गई फोटो जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ नीचे की तरफ काफी सारे घर बने हुए हैं।

यहाँ पर सामने की तरफ एक बहोत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है।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

और इस दुकान में बाहर की तरफ एक लाइट भी लगी हुई है और यहाँ पर बाहर की तरफ एक घड़ी भी लगी हुई है।

आप लोग देख सकते है ये एक जंगल एरिया में एक सामने के की तरफ एक गेट बना हुआ है जो कि वाइट और रेड कलर का है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने कि तरफ ये एक बहुत बड़ी नदी बनी हुई है।

ये आप लोग देख सकते है ये सामने की तरफ एक मेडिकल बना हुआ है जिसका नाम भविनी मेडिकल है जो की यहाँ पर लिखा भी हुआ है।

इसके प्रवेश द्वार पर्पल कलर के हैं जो की दो शटर लगी हुई हैं और इसमें अंदर काफी सारे लोग बेंच पर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे--

इसका नाम बगुसराय संग्रालय है इसका एक बहोत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें बाहर की तरफ एक ब्लैक कलर का गेट भी लगा हुआ है।

यहां पर आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ ये एक इंजिनियरिंग कॉलेज बना हुआ है जो की रेड और व्हाइट कलर का है।

इस पेट्रोल टैंक के पीछे काफी सारे ट्रक और एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और यहाँ पर पीछे की तरफ काफी सारे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं।